और एक मूर्ति खड़ी हुई है यीशु मसीह की यहां पास एक पेड़ लगा हुआ है और रील से सजा हुआ--

जहां पास बहोत सारे बुक और कॉपियां जमी हुई हैं अलमारियों में एक कार बाहर खड़ी हुई है और एक बाहर बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पास एक हवाई अड्डे में बड़ीसी एरोप्लेन खड़ा हुआ हैं जहां पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।